इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा है इस फोटो में गमले नजर आ--

फोटो में फ्लैग नजर आ रहा--

इस फोटो में लोग नजर आ रहे--

इस फोटो में एक्टिवा नजर आ रही है इस फोटो में पेड़ नजर--

इस फोटो में लाइट नजर आ रही है।